मैदान है इस मैदान बहुत सारे घाँस है और मैदान के बीचों-बीच यह एक झोंपड़ा तरफ के झोपड़ी हैं।

यह एक घर है जो जंगल में है शायद यह घर अधिकतर ऐसे घर गावो में होता है।

घर से लाया जाता है और घर तक छोड़ दिया जाता है ये स्कूल के बाहर बहुत ही बड़ा ग्राउंड मैदान है।

जैसे की कुर्करे उपलध है पानी के बोटल ठंडा यह सब वो है यहाँ पे बहोत सारे लोग आए है खरीदनें के लिए--

बहुत चम्मच रखे हुए है हाथी भी है और बैल भी है और--

यहाँ पत्थरों द्वारा बनाया जाता है यह बहुत ही खुबसूरत है बड़े-बड़े--